जैस स्टेशन पे नीचे पटरिया बिछी हुई है जिसपे रेलवेज की ट्रेन आती जाती है। तथा ये रात्री पहर का सीन है और एक हाइ ब्रिज भी हमे दिखाई देता है इसमे।

और टेबल पर लोगों के खाने के लिए प्लेट और चम्मच तथा ग्लास भी लगे हुए है।

जो की रेल्वे की संपत्ति द्वारा पदत अ कुर्सी पर बैठ कर आराम फरमा रहे है और साइड मे र-रेल की कुछ पट्टरिया भी नजर आ--

हिंदुस्तान पेट्रोलियम कंपनी के पेट्रोल पम्प की ये तस्वीर है। जहाँ पर कई सारे वाहन खड़े है। वाहन अपने मे पेट्रोल या डिजेल अपने उपयोगिता के अनुसार सामान डलवाने के लिए लाइन मे कतारपद है।

जैसा की हम लोग साफ तौर पर देख सकते है की ये तस्वीर भी किसी बहुत ही सुन्दर से रेस्टोरेन्ट की मालूम पड़ती है। जिस रेस्टोरेन्ट मे लोगों के आने के लिए तथा खाना खाने की व्यवस्था की गई है।

जैसा की हम लोग इस तस्वीर मे भी साफ तौर पर देख सकते है की ये एक रेलवे स्टेशन की तस्वीर है।

जैसा की हम लोग साफ तौर पर देख सकते हैं की ये तस्वीर एक नदी की तस्वीर है। जिस नदी मे बाढ़ की वजह से जलस्तर मे काफी बढ़ाव हो गया है। जिसके पश्चात इसमे कुछ बांस की पगदंडिया लगा दी गई हैं।

जैसा की हमलोग इस तस्वीर मे साफतौर पर देख सकते है ये तस्वीर पटना मे अवस्थित गंगा घाट की मालूम पड़ती है।